ओ समुंदर है समुंदर के मायने छः सात बोट है कोई अलग अलग कलरा का मायने बोट है पानी है आगे दिख रियो पानी पानी पड़ो दिख रियो है बीके आगे पेड़ भी दिख रिया है बोट के अन्दर कोई बैठे है कोनी आदमी तो दिख रिया कोनी बोट पर नम्बर ज़रूर लिखेड़ा है।